और ऊपर से लाइट भी जल रहा है बहुत अच्छा और सुंदर डेकोरेशन है।

एक तरफ से बिल्डिंग बहुत साफ दिख रहा है बहुत सारे लोग भी उसमें--

बाहर बाइक भी खड़ी है दरवाजा खुला हुआ है अगल-बगल बहुत सारा मकान दिख रहा है बिल्डिंग --

और वहाँ अस्कूल का लिखा हुआ हैपट्टी में--

ये बहा हुए ओ में पानी बा और उसमें जल को भी--

ये सरकारी हॉस्पिटल दिख रहा है ऑरेंज कलर का उसका पेंट है बीच में फर्स लगा हुआ है।

साइड में तीन चट्टान दिख रहा है मंदिर वाइट कलर का है नीला पट्टी लगा हुआ है।

पेड़ और पौधा है हरा हरा फूल और पत्ती भी है बीच में साइड साइड रास्ता भी है।

और ऊंचे ऊंचे भी पर्वत है।

पत्ती दिख रहा है और बिल्डिंग भी देख रही है अगल-बगल पेड़ भी दिख रहा है हरा भरा --

नीचे सारा आदमी बैठा है बहुत आदमी चल रहा है और एक छतरी लगा हुआ हैसामने--

ब्लैक रंग का टी-शर्ट पहना है ब्लू कलर का पहन--

वो वो सारी जैसा रास्ता है और ढेर सारे आदमी है बस भी खड़ी है।

और उसका पोर्च हरा और ऑरेंज में सजा--

सामने पहाड़ एरिया है रास्ता है।

गंगा जी में नाव में तैर रहे हैं और चल भी रहे हैं सूरज भगवान चमक भी रहे हैं।

सामने गाड़ी घोड़ा खड़ी है बीच में रास्ता है।

वहाँ एक आदमी पैर धअ के खड़ा हुआ है टोपी सर पर पहना है।

उसमें पानी भरा हुआ है अगल-बगल मकान भी है थोड़ा सा पेड़ और पौधे का पत्ती दिख रहा है।

सामने किसी चीज का गार्डन है।

और बहुत सुंदर ये दिख रहे हैं माथे पर मुकुट है हाथ में बंसी है कृष्ण भगवान है।

ये मंदिर जैसा दीवार हैईटा कलर का और सामने अंदर एक और दरवाजा है।

बीच में टेबल है दो इधर कुर्सी है दो इधर कुर्सी है चार कुर्सी है और आदमी और लेडीज़ सब लोग खड़े हैं।

ऊपर से लाइट जल रहा है पंखा भी चल रहा है बहुत बढ़िया डेकोरेशन है बहुत सुंदर है --